यह एक स्कूल है जहा पर छात्र छात्रा से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते है यह बोहत बड़ा स्कूल यहा --